connecting sbhs to computer पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम single board heater system को sbhs कहेंगे
इस स्पोकन ट्यूटोरियल में हम usb driver संस्थापित करने के लिए कंप्यूटर और sbhs के बीच फिज़िकल कम्युनिकेशन सेटअप करना सीखेंगे
sbhs के साथ कार्य करने के लिए हमें पॉवर केबल और usb/rs232 कम्युनिकेशन केबल की ज़रुरत होगी
विंडोज़ मशीन पर आपको आपके कंप्यूटर पर os से सम्बंधित ftdi virtual com port usb driver की भी ज़रुरत होगी
आप इसे wwwftdichipcom/drivers/vcphtm से डाउनलोड कर सकते हैं
मैं आपको यह वेबसाइट दिखाती हूँ
इस वेबसाइट पर नीचे जाएँ और अपने os से सम्बंधित ड्राईवर फाइल चुनें
मैंने विंडोज़ के लिए 32 bit 20814 driver file डाउनलोड कर ली है
single board heater system और आपका कंप्यूटर usb केबल या rs232 केबल उपयोग करके जोड़ा जा सकता है
अपने कंप्यूटर और sbhs पर सम्बंधित पोर्ट्स को देखें
यहाँ usb पोर्ट कि इमेज है जो आपको कंप्यूटर के पिछले पैनल पर मिलेगी
कंप्यूटर के पिछले पैनल पर एक serial port
sbhs पर usb और serial port
ध्यान दें rs232 केबल उपयोग करने का निर्णय से पहले अपने कंप्यूटर पर rs232 पोर्ट कि उपलब्धता को निश्चित करें
usb और सीरियल केबल 232 के बीच चुनने से पहले आपको कुछ सम्बंधित jumper सेटिंग्स करनी हैं
जम्पर केवल एक छोटा सा कनेक्टर है
इनका युग्म यहाँ दिखता है प्रत्येक जम्पर दो टर्मिनल्स जोड़ सकता है
दोनों हटे हुए जम्पर्स के साथ sbhs पर कनेक्टर्स चित्र में प्रदर्शित की तरह हैं
यहाँ हम देख सकते हैं कि प्रत्येक साइड तीन टर्मिनल्स हैं
हम देख सकते हैं कि pcb पर इन कनेक्टर्स के आलावा usb और rs232 लेबल्स भी प्रिंट किये जाने हैं
प्रत्येक साइड बीच वाला टर्मिनल कॉमन टर्मिनल है
एक जम्पर लें और एक तरफ के कॉमन टर्मिनल और उसी तरफ के usb लेबल के पास वाले टर्मिनल से जोड़ें
एक अन्य जम्पर लें और दूसरी तरफ वही करें
इस तरह आप कम्युनिकेशन वाला usb पोर्ट चुनने के लिए जम्पर्स सेट करते हैं
उसी प्रकार कोई भी कॉमन टर्मिनल पर दोनों जम्पर्स और कम्युनिकेशन वाले rs232 पोर्ट को चुनने के लिए rs232 लेबल के पास टर्मिनल को रख सकता है
मैंने प्रदर्शित की तरह usb पोर्ट चुनने के लिए जम्पर की सेटिंग्स को कॉन्फ़िगर कर लिया है
जम्पर कि सेटिंग पूरी होने के बाद पॉवर केबल को 3 pin 230 volt ac घरेलु सॉकेट और sbhs से जोड़ें
mains power on करें पॉवर केबल कनेक्टर के नीचे sbhs के smps पर on/off स्विच हो सकता है या नहीं भी हो सकता है
यदि यंत्र सफलतापूर्वक पॉवर से जुड़ गया है तो डिस्प्ले को on हो जाना चाहिए
यहाँ sbhs पर डिस्प्ले की इमेज है
ध्यान दें कि वास्तव में जो दिखता है वो प्रदर्शित से कुछ अलग भी हो सकता है लकिन यह निश्चित रूप से खाली नहीं होना चाहिए
sbhs को पॉवर on करने के बाद उचित usb/rs232 केबल को sbhs और कंप्यूटर से जोड़ें
यहाँ usb केबल को sbhs और लैपटॉप से जोड़ने का उदाहरण है
हमेशा निश्चित कर लें कि पहले यंत्र की पॉवर ऑन हो और फिर usb/rs232 केबल जोड़ें
आगे हम driver संस्थापन देखेंगे
याद रखें कि ftdi vcp usb driver पहले ही ftdichipcom से डाउनलोड किया गया था
आप driver installation के लिए गाइड भी यहाँ देख सकते हैं wwwftdichipcom से गाइड डाउनलोड करें
इस वेबसाइट पर जाते हैं
बाएं पैनल में drivers पर क्लिक करें
ड्राप डाउन मेन्यु में vcp drivers चुनें
वेब पेज पर installation guides लिंक पर क्लिक करें
आवश्यक ऑपरेटिंग सिस्टम डॉक्युमेंट चुनें
चूँकि मैं विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग कर रही हूँ मैंने windows 7 installation guide देख ली है
आप अपनी आवश्यकता के अनुसार operating system guide चुन भी सकते हैं
यह गाइड ड्राईवर संस्थापन के लिए विस्तृत स्टेप बाइ स्टेप निर्देश रखता है
मैं आपको windows 7 pdf guide फाइल दिखाती हूँ
इस गाइड में समझाए गए की तरह स्टेप्स का अनुसरण करें और ड्राईवर संस्थापित करें
निम्न विशिष्ट स्टेप्स में सम्मिलित है
device manager खोलना
usb port पर जाना
driver path डालना
और एक बार फिर स्टेप्स दोहराना
एक बार जब ड्राईवर सफलतापूर्वक संस्थापित हो जाये
तो आपको यंत्र com और lpt में सूचीबद्ध मिलना चाहिए
अब मैं आपको यहाँ यह दिखाती हूँ
आपके यंत्र का एक com नंबर होना चहिये
उदाहरण के लिए यहाँ यह com 3 है
अब मैं सारांशित करती हूँ कि इस ट्यूटोरियल में क्या सीखा
पहला sbhs को कंप्यूटर से जोड़ा यह सम्मिलित करता है rs232 या usb port jumper settings sbhs को पॉवर ऑन करना
दूसरा usb ड्राईवर संस्थापित करना संस्थापन गाइड डाउनलोड करना गाइड का अनुसरण करके ड्राईवर संस्थापित करना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
स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट टीम स्पोकन ट्यूटोरियल्स का उपयोग करके कार्यशालाएं चलाती है ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को प्रमाणपत्र देती है
अधिक जानकारी के लिए contact @spokentutorialorg पर लिखें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
यह भारत सरकार के एम एच आर डी के ict के माध्यम से राष्ट्रीय साक्षरता मिशन द्वारा समर्थित है
इस मिशन पर अधिक जानकारी
आई आई टी बॉम्बे से मैं श्रुति आर्य आपसे विदा लेती you धन्यवाद